यहाँ पर कई अच्छी मशीन है पीले कलर की हैं यहाँ ब तीन बच्चे हैं यहाँ झूला है बोहत ही अच्छा--

औरतें भी नहाती है। बहोत ही सुन्दर इस नदी का पानी पीते हैं लोग बहोत ही शुद्ध है।

यहाँ पर डीजे खड़ा हुआ है। डीजे बहोत बज रहा है। अच्छा है डीजे बजते हुए यह बहोत तेज़ बजता है।